इधर सफेद कलर की कार खड़ी हुई है उसके बगल में ऑटो खड़ा हुआ है।

यह एक पार्क है पार्क के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यह एक किला है किले का कलर ऑरेंज चॉकलेटी ब्लैक है।

यह एक जगह है यहां पर बाहर बाउंड्री हो रही है।

यह एक घर है जो की चॉकलेटी और सफेद कलर का है।

रिक्सो पे अलग अलग तरीके के चित्र बने हुए हैं।

इसके साइड में दूसरे पोस्टर पर मोदी निवास लिखा हुआ है।

लाइटों का कलर रेड है स्काई ब्लू है ब्लू है और ग्रीन है।

और आस पास बहुत सारे छोटे बड़े हरे हरे पेड़ खड़े हुए हैं और घास लगी हुई है।

पीछे दो क्रेटे रखी हुई है क्रेट नीली और लाल कलर की है।

आसमान दिखाई पड़ रहा है। आसमान का कलर नीला और सफेद है।

सामने से एक अंकल जा रहे हैं सफ़ेद शर्ट पहनकर हाथ में काला छाता पकड़कर।